बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं घास उग रही है छोटे-छोटे पत्ते उग रहे हैं और उसके सामने एक कच्चा मकान बना हुआ है ईंटो का और उसके पीछे बड़ा सा पेड़ बना हुआ है एक पहाड़ दिख रहा है लाईट के तार--

जो की और बाहर एक बॉक्स रखा है ब्लू ब्लैक कलर का उसके ऊपर वाइट कलर का कुछ पोस्टर लगा हुआ है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है बाहर लाइट के बड़े-बड़े लैम्प लगे हुए है खंभे में।